यह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है जिसका नाम मिस्टर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ हैं।

और आपको तीन लड़के भी अपना काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं।

और यह बहोत ही विशाल दिख रहा है।

जो दिखने में बहोत ही सुंदर और विशाल लग रहा है।

जिसमें आप कई सारी खाने की चीजें देखने को मिल सकती हैं।

यह फंक्शन में आपको बहोत ज्यादा डेकोरेशन देखने को मिल रही हैं जो इस तस्वीर को बहुत ही सुंदर और आकर्षित करती हैं।

और आसमान भी बहोत अच्छा लग रहा हैं यह तस्वीर देखने में बहोत ही सुंदर और आकृषित लग रही हैं।

जो बहोत ही चमक री है और अच्छी क्वालिटी की लग री है।

यहां पर आपको चार लड़कियां एक चित्र दिखाते हुए देखने को मिल रही हैं।

और इन लड़कियों की मेहनत को दर्शाती है।

जो दिखने में बहोत ही सुंदर और अच्छे लग रहें हैं।

इस रेस्टोरेंट में आपको काले रंग का टेबल और काले रंग की कुर्सियां भी देखने को मिल रही हैं।

यह आपको कई सारे अतरंगी और रंग बिरंगे फूलों की तस्वीर देखने को मिल रही है।

और इस तस्वीर में ये फूल बहुत ही आकर्षित और सुंदर सुंदर लग रहे हैं।

और साथ में थोड़ी बहोत हरियाली भी देखने को मिल रही है।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

जहां पर आपको हर प्रकार के और रंग बिरंग के कपड़े देखने को मिल रहे हैं।

जिनके ऊपर अलग प्रकार के कपड़े लगे हुए हैं।

इन तस्वीर में आपको अलग अलग प्रकार की टाइल्स देखने को मिल रही है।

इसका रंग बाहर से सफेद और थोड़ा सा काला दिख रहा है।